और तकिया रखा हुआ है और ये घर है जो बड़ा सा है और ये पीला व्हाइट कलर से पेंट किया हुआ है यहां पे दो --

यहाँ सामने एम कुछ सामान रखा हुआ है जो बोतल है तीन दिखै दे रे ग्रीन है और एक व्हाइट की रेड ।

यहाॅं सामने में बड़ा सा दिखाई दे रहा है जंगल इलाके जैसे और यहाॅं पे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो छोटे बड़े हैं।

यहां सामने में एक जेन्स दिखाई दे रहे है जो ब्लू कलर का टी - शर्ट पहने हुए है और पैंट पहने हुए है और यहां पे झाड़ू --

यहां सामने में बहुत सारा पानी दिखाई दे रहा है ये बहुत बड़ा नदी है बहुत दूर मे दिखाई दे रहा है साइड में कुछ पेड़ पौधे दिखाईं दे रहे है।

लिखा हुआ है यहां पे जो ये व्हाइट कलर का है यहां पे एक गेट है लोहा है उसपे एक ताला लगा हुआ हैं।

सामने मैं रोड दिखै दे रहा है रोड पे दो लोग बिच एम दिख रहे हैं और बीच में एक कार लगी हुई है व्हाइट कॉलर की और साइड और साइड मे यहां कुछ बाइक भी लगा हुआ है!